दिवाली के टाइम की फोटो है| यहाँ पर क्रैकर्स बिक रहे हैं बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं और ये भईया बैठे हुए देख रहे हैं शायद यह क्रैकर्स ही लेने थे इन बच्चों को।

और खेल के हंस रहे हैं और फोटो भी घिंचा रहे हैं मजा ले रहे हैं खेलने का दोनों बच्चियाँ आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं जो देखने में बहुत --

जैसे आसमान में किसी ने रंग भर दिए हों पीछे की तरफ बिल्डिंग है | इधर दो पेड़ खड़े हुए हैं आगे की तरफ घास आगे की तरफ घास है जो दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है ग्रीनरी इवनिंग का व्यू --